नीचे चप्पल पहने हुए नजर आ रही है उनके पीछे भी और दो लोग दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति जो की गिटार पकड़ा हुआ नजर आ रहा है।

बैंक के बोर्ड के ऊपर जो की पिले कलर का बोर्ड उसमे अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है।

भूरे रंग का शटर भी लगा --

एक व्यक्ति जो की पुजारी दिख रहा है वो पूजा करते हुए नजर आ रहा --

हम देख सकते है की अंदर गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है उसके निचे ही हम देख सकते है।

और ये भी देख सकते हैं की ईंटों से बनी हुई ये ईमारत दिख रही है।

और दूर पर एक बैनर दिख रहा है जिसपे वी टू लिखा गया है।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

हम देख सकते हैं की यहाँ पे एक घर भी दिखाई दे रहे हैं।

बकरियाँ और कुछ लोग भी दिख रहें हैं। उस तरफ हम देख सकते हैं की एक ईमारत बनती हुई नजर आ रही है।

सामने एक घर टूटा दिख रहा है जिसके ऊपर भी --

यहाँ पे हमे घर दिखाई दे रहा है घर के पास में ही हम देख सकते है एक मदिर भी नजर आ रहा है।

यहाँ हम देख सकते है की बहुत सारी भारी और ऐसी चीजे रखी हुई है --

नीले-पीले दिख रहे हैं उसके नीचे हम देख सकते है कि नीचे की तरफ भी फूल रख--